नीचे ज़मीन भूरी दिख रही कहीं पे हरी घाँस उगी हुई। परछाईं दिख रही कुछ तार दिख रहें हैं बिजली के। भारत देश का झंडा है बगल में न् चित्र बनी हुई है एक महिला की।

सारे खेलकूद के समान है जो कि लोहे के हैं कुर्सियां हैं प्लास्टिक की हैं कुछ काली हैं | नीचे हरी रंग की घास है भूरी मिट्टी है खेलकूद का सामान जो कि ऊँचा फिसल पट्टी है।

बनिया पहने हुए हैं बाल काले हैं सभी छोटे-छोटे भूरी मिट्टी हैं बगल में मोबाइल ट मोबाइल का टावर दिख रहा हैं पेड़ पौधे बड़े -बड़े घास हैं।

के ऊपर आम हुए है कुछ पेड़ पौधे है जो कि कुछ छोटे कुछ बड़े हैं ।

नीचे हॉस्पिटल लिखा हुआ है| बगल में लोहे की गेट है| वह खुला हुआ है जोकि काले रंग की है| नीचे गाड़ियां खड़ी हैं।

यहां पे गुब्बारे हैं जोकि पीले रंग के कुछ गुलाबी रंग के कुछ लाल रंग के लगे हुए हैं।

लोहे की जालियां लगी हुई है। अंदर एक आदमी बैठा हुआ है। बहोत सारी जालियां लगी हुए है। ऊपर टिन ा छपा हुआ है। पेड़ पौधे दिख रहे है। आसमान साफ है। बहोत धूप बिजली की तार दिख रही है। अंदर बैग रखे हुए हैं।

यह पिज़्ज़ा पार्टी एण्ड रेस्टोरेन्ट है यहाँ पे पिज़्ज़ा मिलता है कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम मिलती है बिरियानी पनीर मिलती है हीरो की गाड़ी खड़ी हुई है।